ये जनरल स्टोर के बेकरी की शॉप है जहां पर बहुत सारे आइटम्स है कुरकुरे हैं और डेकोरेशन का भी समान है यहां पर --

भी बहुत ही अच्छे-अच्छे न्यू कलेक्शनस होते हैं।

फ्लावर प्लॉटिंग की गई है एकदम ग्रीनरी जो की बहोत ही प्यारा शो हो रहा है।

ये बॉयज का हॉस्टल है हरिओम करके नाम है उनका--

की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है जैसा यहां पे लिखा गया--

ये एक प्लेग्राउंड है जहां पर बच्चे खेल रहे हैं।

आसरे महाशय जी का निवास है।

और बहोत सारे लोग यहां पर खड़े हुए है।